जो कि बैग को ले खड़े हुए हैं।

एक कमरे में डबल बॉक्स बेड रखा है।

और इसमें एक बैनर लगाया गया है जिस पर लिखा है कुलदीप सिंह प्लंबर ।

यह एक लड़की है जो कि डांस कर रही है।

और इसके पीछे एक थीम लगाई गई है जो बहुत अच्छी लग रही है।

कुछ औरतों ने और आदमियों ने आंखों पर हाथ रखा हुआ है।

ए घर में बहोत सी मूर्तियां रखी हुई है।

यह एक शॉप है इसमें एक डबल बेड रखा हुआ है।

बराबर में बहुत सारे फ्रिज भी रखे हुए हैं।

और इसमें सामने एक एल_सी_डी लगी हुई है।

इसके एक गेट पर एक आदमी टेबल पर बैठा है।

एक रूम है बहुत से आदमी योगा कर रहे हैं।

और उसके पीछे तीन चार बलियों में नेट गढ़ा हुआ है।

इसमें बहोत सारे जिम की सामान रखे हुए हैं।

इसका नाम उ उमर खान है।

बराबर में एक बस भी खड़ी हुईं है।

इनीके ऊपर पंखा चल रहा है जो ठंडा वातावरण कर रहा है।

इस मे बहोत सारे मकान दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें से एक आदमी के हाथ में हेलमेट है।

जो की बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

यह एक पांच मंजिला बिल्डिंग है।

और स्टेज पर तीन चार लड़कियाँ प्रार्थना कर रही हैं और इन के बराबर में एक मैडम भी खड़ी हुई है।

यहां पर शोकेस में बहुत सारी बोतल रखी हुई है।